गेट के बीच में सफेद रंग से कुछ बनाया गया है।

अंधेरा बिल्कुल बहुत हैं ऊपर आसमान काले रंग का है।

यहां बहुत सारे लोग उपस्थित हैं छठ पूजा हो रही है।

लोग बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनकर यहां पर बैठे हुए हैं।

साथ ही सफेद रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है यहां पे रोड है ऊपर पर बादल है।

झींगे लाल कलर की दिखाई दे रही है।

यहां एक बड़ा सा शॉप है।

यहां पर साइड पे नीले रंग का रैक रखा हुआ है।

तथा नीचे सफेद रंग का टाइल्स लगा हुआ है ऊपर व्हाइट कलर का रंग है।

अन्दर बहुत सारे सामान रखी हुई है।

जिसमें सफेद रंग के अक्षरों से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लिखा गया है।

आस पास बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं।

उल गोरे रंग तथा भूरे रंग से रंगा गया है।

एक खंभा भी लगा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे चीजों से सजावट की गई है।

यहां पर एक सामने काले रंग की बाइक खड़ी हुई है।

कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं।

आस पास बहुत सारे हरे भड़े पेड़ पौधे भी है।

काली टोपी पहन कर तथा लाल टी शर्ट पहन कर खड़ा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे लोग उपस्थित है ऊपर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।